बॉटल्स दिखाई दे रही है मग्स दिखाई दे रहे है यहाँ पर पर्पल कलर दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

है और बोहोत सारे चीजे दिखाई दे रही है पिंक कलर दिखाई दे रहा है बैग दिखाई दे रहे है और बोहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है टेबल्स दिखाई दे रहा यहाँ पे दीवार का कलर पिंक दिखाई दे रहा ऑरेंज दिखाई दे रहा है।

साइड पेड़ दिखाई दे रहा है यहां पर रेड कलर दिखाई दे रहा है वाइट कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है और भी बोहोत सारे चीजे दिखाई दे रही है यहां पे एक रोड दिखाई दे रही है जिस पर हलका सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे बैनर दिखाई दे जो की वाइट कलर का ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और भी बोहोत कुछ दिखाई दे रहा है।